एक आदमी खड़ा है एक और आदमी भी पास में खड़ा है।

यहाँ दो बड़े खंभे दिख रहे है और यहाँ पे फ्लावर से लाइटिंग की हुई है लाइट लगी हुई है गमले लगे हुए हैं।

यहां पे कठपुतली की फोटो भी टंगी हुई है और वॉलपेपर वाली घड़ी भी लगी हुई है।

यहां पे कैमरा सा दिखाई दे रहा है और बहुत सारी पासबुक बुक भी दिख रही है ये व्हाइट कलर की दीवार बनी हुई है।

पे इयरबर्ड इयरफोन भी मिलते हैं स्कैनर रखा हुआ हैं और यहाँ पे मोबाइल के चार्जर और भी हैं मोबाइल भी मिलता हैं।

यहां पे टेबल रखी हुई है ग्रे कलर के पर्दे लगे हुए हैं व्हाइट कलर की चद्दर लगी हुई है।

एक पेड़ बना हुआ है और यहां पे घर भी बहोत सारे बने हुए हैं पेड़ पौधे लगे हुए नीचे बहुत सारी औरतें भी बैठी हुई है।

और यहां पे सारे लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं आपस में चेयर लगी हुई है लोहे की कुछ जेंट्स है कुछ लेडिस है।

यह ऊपर हैडिंग डाली हुई है बीच में खंबा लगाया हुआ है और यहां लोगों का आना जाना लगा हुआ है।

यहां पास में पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और एक शेर की मूर्ति भी बनी हुई हैं जो ब्लैक कलर की है।

अलग अलग वेस्ट मटेरियल के सामान से बना रहे हैं सब लोग अलग अलग बना रहे हैं एक सर हैं जो इनका चेक कर रहा है कि कैसे बना रहे हैं बच्चे।

लेबर रूम की तरह दिखाई दे रहा है यहां परदे लगे हुए है और बहोत सारे पंखे लगे हुए है और यहां विंडो भी लगी हुई है।

किसने बाल्टी और सरफ का पाउच ले रखा है एक लड़का और भी है जिसने मास्क पहन रखा है वह भी कूड़े के आदमी की हेल्प कर रहा है।

यह एक गिफ्ट शॉप है यहां पे बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए हैं टेडी बियर बच्चों के खिलौने चेयर गिफ्ट और यहां पे छोटे बच्चों के सोफे --

ये बहोत बड़ा घर बना हुअ है यहां पे बहोत सारी ब्लैक कलर की टंकियां रखी हुई हैं पानी भरने वाली --

यहां आस पास में दो बच्चों के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों के चेहरे भी ब्लर है एक लड़की है एक लड़का है।